ये रेलवे आ रही हैं उधर से और उसके दाए साइड में बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो ट्रेन के इंतजार मे बैठे हुए हैं देखने को मिल रहे हैं जो बेहद ही अच्छी-सी फोटो लिए हैं।

लग रहा है की ये एक स्टेडियम जो बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रही है स्टेडियम की और उसके दाए तरफ एक सड़क गई है जो बेहद ही ख़ूबसूरत नजारा देखने को मिल रही सड़क की जो सड़क एक--